वह दृश्य बहुत ही आकर्षित और सुंदर दिख रहा है यहाँ पर आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे और ठीक सामने भी बहुत सारी हरी-भरी घास भी है।

वह दृश्य एक झरने की है।

जिसके चारो तरफ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं और ये बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ हैं दोनों तरफ अपनी टांग फेरके --

और कुछ बच्चे उस साइड दिखाई दे रहे हैं। बीच में बहुत ही सुंदर दिखाई दे --

दृश्य एक सड़क का है जिस पर दो भैंस और एक औरत उसके पीछे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

यह दृश्य एक किसी बहुत ही महान देवताओं टेम्पल दिखाई पर रही है।